और कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक अंकल भी दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर का टी शर्ट पहन रखे हैं।

यहाँ पर और सीढ़ी है और एम. स वैशाली भी लिखा हुआ है यहाँ पर--

और वो येलो कलर का शर्ट पहन के रखे हैं और चेयर है और बैठे हुए हैं।

और नि और बाहर में सड़क दिखाई दे रहा है और अंदर में कुछ-कुछ सामान भी दिखाई दे रहे हैं।